दिवार दिखाई दे रही है और सफ़ेद रंग की जिसमें एक लाल रंग का रंगाई हो राखी ही है जिस पर भगवान श्री राम का पोस्टर लक्खा हुआ है लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है। सामने एक बनेर लगा है।

और एक प्लाट दिखाई दे रहा है प्लाट पर नीचे मिट्टी फैली हुई है छोटे -छोटे पत्थर पड़े हुए है एक कार खड़ी है जोकि स्केटर रंग की स्लेटी रंग की है इसके अंदर सतरंगा झंडे के दो छोटे -छोटे झंडे रखे हुए है बराबर में एक कार दिखाई दे रही है वेह सफ़ेद रंग की --

ऊपर हरे- भरे पेड़ दिखाई दे रहे है जहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई है सामने की तरफ एक गोलाकृति बनी है जिसमें हरी -हरी घास दिखाई दे रही है जिसके चारों तरफ पेलिंग दिखाई दे रही है निले रंग से कुछ लिखा हुआ है नीचे का फर्श दिखाई --

अलग रंग के कपड़े रखे हुए हैं ऊपर की छत दिखाई दे रही है लाइटे लगी हुई नीचे क--

फर्श दिखाई दे रहा है जहां पर काउंटर रखे काउंटर पर सीसे रखी है जिस पर साड़ियां--

ये एक बॉक्स में रखे हुए है पीछे देखने पर दीवार दिखाई दे रही है जोकि नीले रंग की है वहाँ पे एक मोटर साइकल खड़ी है जिसपे सीसा लगा हुआ है पॉलिथीन रखी हुई है पीछे और भी सामान चारों तरफ दिखाई दे रहा हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर लाल रंग का बोर्ड बना हुआ है सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है नीचे काँच के शीशे दिखाई दे रहे है लोग दिखाई दे रहे है लोग खड़े हुए है मोटर साइकिल स्कूटर दिखाई दे रहे है पीछे भी काँच के शीशे दिखाई दे रहे है यहाँ पर--

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें पीछे की दीवार दिखाई दे रही है दीवार सफ़ेद रंग की है यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है रेक दिखाई दे रही है रेको में अलग-अलग की जड़ रखी हुई है।

पीछे एक हैंगर लगा हुआ है जिसमें सफ़ेद रंग की शर्ट की हुई है पीछे यहाँ पर बहोत ज्यादा मात्रा में अलग-अलग टी -शर्ट्स जो है ग्रुप में रखी हुई है जिनपर टैक्स लगे हुए --

और एक दुकान का द्रश्य है जिसमें स्टेचू खड़े है स्टेचू पर सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा जिसमें लाल रंग का दुपट्टा दिखाई दे रहा है हरे रंग की पट्टी दिखाई दे रही है।

सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक कार खड़ी है जोकि --

दुप्पटे से ये सजा हुआ है बीच में कुर्सी रखी जोकी गुलाबी रंग की जिसपे उसके हाथों पर मोर की आकृति बनी हुई है और पीछे नीले रंग के पर्दे दिखाई दे रहे --